सामने बहोत सारी मिट्टी पड़ी है। मिट्टी में बीच-बीच में पानी के कड़े हैं। सामने देखने पर एक बांध नज़र आ रहा है।

संध्या के समय में एक बस अड्डा है। बस अड्डे पर बहोत सारी बस खड़ी हुई हैं और सामने एक बस है जिसमें लोग चढ़ रहे हैं।

एक घर में कुछ तस्वीरे लगी हुई हैं। सामने कुछ अलमारियां है अलमारियों मे कुछ समान रखा हुआ हैं।

वे सब सामान खरीद रहें हैं। दुकान के बाहर टम्पू और गाड़ियां खड़ी हुई --